वह यह एक कत्थक डांस कर रही है। नीचे एक और औरत बैठी हुई है। पीछे बैनर लगा हुआ है जिसका सम्मेलन चौदह फरवरी लिखा हुआ है।

इसने मोजे पेहने हुए है बगल में अखबार और बैग रखा हुआ है सामने दीवार पे एक वाच लगी है।